यह एक होटल है यहां पे लाल कलर का एक सोफा है यहां पे लाइट है यहां पे पंखा भी है।

यहां पे ऐसी लगा है यहां पे बोहोत अच्छा रूम है यहां पे लाल कलर का अ ब सोफा है और चेयर टेबल हैं।

एक लड़का बैठा है वहां पे ये स्विमिंग पूल है।

और यह एक जानवर भी है और ये यहां पे रस्सी लग लगा है एक--

ओल्ड में है ये एक सिटी कार्ड कलर का है ये यहां पे बहोत सारा लाइट लगा है बाहर मे बहोत सारा कपड़े है बहोत सारा लोग भी हैं बाहर में।

यहां पे बहोत सारा पेड़ भी है पौधे भी हैं यहां पे है।

ये एक फेस वॉश सेंटर है यहां पे बहोत सारे शूज है यहां पे बहोत सारा--

यहां पे एक सीढ़ी भी है ये यहां पे एक पेड़ के पास सीढ़ी भी है और लाइट भी है पार्क भी है और दो लड़का लड़की है और यहां पे दो लड़का बैठे हुए है यहां पे बहुत सारा पेड़ भी है।

और यहां पे ए_सी भी लगा है आ यहां पे बहोत लाइट है सोलर सिस्टम है यहां पे एक बिल्डिंग है।

यहां पे दो अह बाइक खड़ा हुआ है ए_सी भी लगा है यहां पे--

यहां पे बहोत सारा बलून है यहां पे शूज और चप्पल भी बहोत है एक शॉपिंग मॉल है यहां पे यहां पे बहोत सारा बलून है रेड और वाइट बैलून यहां पे शूज भी है यहां पे चप --

यहां पे पंखा भी है यहां एक टेबल है ब्लू कलर का बहुत टेबल है यहां पे पंखा भी है और लाइट भी है यहां पे एक ऑफिस है।

ये एक बेडरूम है यहां बेडरूम में एक ढकन है एक टी_वी है और ए_सी लगा हुआ--

यहां पर घर एक घर है यहां बहोत सारा पेड़ है यहां पे घर बहोत सारा--

यहां पे बहोत सारा इंसान है खड़े हुए हैं यहां पे एक बोर्ड है यहां पे बहोत सारा इंसान है यहां पे एक-

अ बोर्ड एक लगा एक इलेक्ट्रिकल खंभा यहां बहोत सारा पेड़ भी है यहां दो बाइक है एक हेलमेट भी है।

बहोत सारा पेड़ है यहां पे दो बाईक भी हैं।

यहां पे बहुत इंसान लोगों और लोग हैं बहुत इंसान हैं लाइट जला रहा है जल रहा है फोन भी है यहां पे बहुत इंसान हैं।

ऊपर से बहोत सारा पानी गिर रहा है यहां बहोत ज्यादा पानी भी है यहां पे इंसान भी है।

ये एक कॉलेज के बाहर यहां पे बहोत सारा बाइक है यहां बहोत बाइक है और बाइक ऐ_सी लगा है यहां पे--

कार में यहां एक यहां पे बहोत बाइक हैं।

यहां बहुत सारा अं फूल लगा हुआ है और बहुत लाइट भी है और यहां पे बहुत सारा व्हाइट चेयर है खड़ा हुआ है।

ये एक झूला लगता है ये बाहर एक--

और चिल्ड्रेन बुक्स की दुकान है यहा एक लड़का खड़ा हुआ है और सामान ले रहा है और बाहर एक पेड़ भी है और यहा--

यहां पे एक जे_सी_बी है यहां पे बहुत खोदाई कर रहे हैं यहां पे तीनों लड़के हैं।

और यहां बहोत सारा पेड़ है यहां साइड में एक कार भी है यहां बहोत सारा बाइक खड़े हुए है।

बाइक में जा रहा है साइकिल मे एक लड़का चला रहा है अ साइकिल भी है।

और ये होटल है होटल में लगाना लकड़ी का चेयर है और यहां ये होटल और लकड़ी का चेयर यहां लाइट भी लगा हुआ है।

यहां एक टेंपू खड़ा और यहां पे एक बोलेरो खड़ा एक मार्केट है।

अ टेम्पु के बस साइड में अ बाइक भी खड़ा हुआ है रास्ते में।

और यहां सब बहुत सारा फूल है और यहां दूल्हा के भेष में एक लड़का भी है।

यहां बहुत सारा लड़की और लड़के लोग यहां हैं यहां बाहर में।

यहाँ पे बहोत सारा पेड़ भीं हैं साईड में और यहाँ बहोत सारे लड़की लोग और लड़के लोगों में यहाँ साईड - साईड पर अ पेड़ हैं ओर बीच में लाइट भीं लगा लगा हुआ हैं।